यह एक मोटर साइकिल का छोटा सा गैराज है यहाँ पर लोगो की मोटर साइकिल सुधारने का काम किया जाता है।

जैसे महाराष्ट्र से सामान आता है यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग सामान आर्डर करते हैं तो उनका सामान पहुँचाए जाने का काम क किया जाता है यहाँ से।

यहाँ पर एक नृत्य कला का प्रदर्शन किया जा रहा है जो की बहुत बड़ा कार्यक्रम है।

ये है नृत्य कला बोहोत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और यहां पर लड़कियाँ नृत्य कला का प्रदर्शन दिखा रही है।

किसी संगीतकार के संगीत की कला को प्रदर्शित किया जा रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ में ढोल मंजीरा लेकर बहोत अच्छा कार्यक्रम तय हुआ है।

यह एक बहुत अच्छा एंट्री गेट है। यहाँ से-- यह एंट्री गेट पेड़ की डिज़ाइन में बनाया गया है और यहाँ पर हराभरा--

-- और यह पर नृत्य कला का बहुत प्रकार से ध्यान दिया गया है।

यहाँ पर ग्राहकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई है और यहाँ कुछ ग्राहक आ कर के ब्रेक्फस्ट भी ले रहें हैं।